यहाँ पर आप देख सकते है जहाँ पर पिकासा डेरी पार्लर लिखा हुआ है और बड़े-बड़े पोस्टर लगे हुए है काफी ज़्यादा भीड़ है ।

एक बड़ा-सा पोस्टर में लगा हुआ है जहाँ पर लिखा है यूनियन बैंक और समय इसे दिया है सोमवार से शनिवार दस से चार बजे और भोजन अवकाश ढाई बजे से तीन बजे उसके बाद इंग्लिश में भी लिखा हुआ है पोस्टर में--

कोई मॉल या बड़ा सा शोरूम है जहाँ पर काफी ज्यादा शीशे एवं--